यह एक लड़की है जिसने लाल कल लाल लाल रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है वह नृत्य कर रही है।

और उसके आसपास बहुत सा कोल्ड ड्रिंक --

यह एक यह एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम इंडियन आयल है इसके आस-पास --

फ्लोर भी है जिसपे लाइटें चमक रहीं हैं।

मौज ले रहे हैं कुछ लोगो ने लाल कपड़े पहने हैं कुछ ने सफेद तो कुछ ने हरे कुछ ने --

न्योन कलर में है और यहाँ कुछ पोस्टर्स है जो हमारे --

आसपास बहुत सारे खंभे भी हैं।

रस्सियाँ है ताकि मजबूती दे सके आसपास बहोत सारे पेड़ लगाए गये है ।

हमे एक आदमी भी नजर आ रहा है।

हम नीला रंग और सफेद है इसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो न्योन कलर की टी-शर्ट में है ।

यह एक रेलवे स्टेशन का बुक स्टोर है।

यहाँ पर बहोत सारी किताबें दिख रही है इयरफोन है।

जिसके अंदर पिलर्स है पिलर्स --

और बहुत सारे दरवाजे और विन --

और तो और गमलो का रंग लाल रंग --